बहोत बहोत बड़ा समुन्द्र है और समुन्द्र के किनारे कुछ --

हॉल है। हॉल में कुछ लिखा हुआ है। उसके प्राइस भी लिखे हुए हैं और हॉल में एक --

बगल में एक टीचर सभी का काम देख रहे हैं कि बच्चे लोग क्या बना रहे हैं। ये लोग --